केश बनाने वाला जो है दूकान है वो बहुत बनिया है जो आगे में लिखा हुआ है बाल बनाओ बहुत बनिया से जो खूबसूरत--

जो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में और यहां पे देख रहे हैं की बहुत बढ़िया-बढ़िया मछली है।

यहाँ पे जो हैं बहुत सारा लड़का और लड़की जो लगता हैं नहर में लहा रहा हैं जो ऊपर में बहुत बड़ा खुला भी हैं जो बहुत आदमी हैं लहा रहा हैं।